सामने में दो मिकी माउस है जो मिकी माउस का कलर ब्लू है।

ढाबा और अपना ढाबा का पोस्ट्रिंग लाल कलर का है सामने में दो गाड़ी खड़ा है एक विटारा ब्रेजा एक बलेनो ।

सारा कुर्सी का कलर लाइट ग्रीन में है और सामने ग्राउंड में ब्लैक कलर के टाइल्स लगा हुआ है।

यह एक दृश्य यह मॉल का है जो यहां डेली वेयर का बहुत सामान रखा हुआ है।

अंदर में एक आदमी बैठे हैं और उनका काउंटर व्हाइट कलर का है।

ऊपर तरफ स्टेयर्स लगाया है बैठने के लिए।

सामने में दो इस्कूटी रखा गया है दो स्कूटी के पास चार आदमी खड़े है।

सामने में एक आदमी सीढ़ी से चढ़ रहे हैं जो वाइट कलर के ड्रेस पहने हैं शर्ट पैंट दोनों व्हाइट है।

यहां पे एक कार खड़ी है कार का कलर काला है।

घर का कलर व्हाइट और रेड है और सामने में दो गो गुलदस्ता लगा हुआ है।

यहां पे टोल प्लाजा है जोकि रांची नगर निगम का है।

पीछे तरफ भी बहुत सारा पानी जो है थमी हुई है और बगल में बहुत सारा जंगल है पेड़ का।